काफी बड़ा फील्ड लग रहा है फील्ड के बीचों-बीच ये मकान दिख रहा है ये कोई कार्यालय की तरह ही लग रहा है या कुछ कुछ पर्यटक स्थल होगा।